मेन गेट नजर आ रहा है।

बीच में एक गैलरी नजर आ रही है।

यहां एक नाई की शॉप नजर आ रही है।

यहां पर एक हॉल नजर आ राहा हैं।

यहां पर तीन लड़कियां डांस करती हुई नज़र आ रही है।

एक स्टैचू नजर आ रहा है।

सब लोगों के चेहरे पर ब्लर नजर आ रहा है।